टेबल जैसा बना हुआ है जो की टाइल्स का है।

ग्रीन कलर का कारपेट बिछा हुआ है और बाहर भी धूप खिली हुई दिख रही है।

यह एक हॉस्टल की फोटो है जिसका नाम साबरमती हॉस्टल हैं।

साथ में एक साइड को कुछ पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं और इसका ऑडिटोरियम बहोत सुंदर दिख रहा है।

बट मोटू पतलू एक्स्ट्रा के नाम भी दिख रहे हैं और साथ में इसके ऊ इसके अंदर एक फ्रीजर दिख रहा है।

जिम ट्रेनिंग कर रहे हैं और बहोत सारे इकुपमेंट रखे हुए हैं।

दो तीन दरवाजे भी दिख रहे हैं।

पौधों को पानी देने का काम कर रही है पीछे हमें बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है।

यहां पर आया हुआ और लोग इसको सम्मान दे रहे हैं और बहोत सारे लोग हैं यहां पर एक औरत ने मास्क भी लगाया हुआ है उसके हाथ में पर्स --

यहां पर एक घर बनाने की तैयारी चल रही है बीम भर दिए गए हैं आधे आधे और साथ में हमें एक--

यह एक बाल काटने की दुकान है जहां पे एक नाई जो है वो एक पर्सन के बाल काट रहा है और दूसरा पर्सन जो--

पोस्टर में एक हॉलमार्क का निशान भी दिख रहा है।

और साइड में हमें कुछ लाइट्स भी दिखाई दे रही और एक कार --

औ बहोत सारे पोस्टर लगे हुए हैं और सारी दुकाने बंद है और--

बहोत सुंदर सी कलाकारी की हुई है और यहां पे एक औरत सब्जी बना रही है।

और यहां अंदर टेबल पे कुछ सामान रखा हुआ दिख रहा है।

यह एक पेट्रोल पंप की फोटो है जिसपे लिखा है भारत पेट्रोलियम बैंक और उसमें--

ये हमे एक गैराज की फोटो लग रही है जिसमे हमे एक--